उधर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे भी बनी हुई हैं।

इसमें से एक पोस्टर भी है लगा हुआ जेई मेडिकल नीट पटना और फिजिक्स वाला लिखा हुआ है।

जो हम नीले कलर से पेंट है।

यहां पर दो फ्रिज रखे हुए हैं।

इसे घेरा गया है लोहे के खंभे और जाल से।

इधर एक दो कुर्सियां भी हैं।

यह एक किसी फर्नीचर शॉप का दुकान है।

यहां पर एक टेबल लगाया है और चार कुर्सियां भी है।

यह एक किसी फल का दुकान है।

यह एक किसी लाइब्रेरी का फोटो है।

ऊपर में बहोत सारे पंखे और लाइटें लगाई गई हैं।

और उधर ही कुछ टेंटे बनी हुई है पहाड़ के नीचे।